तस्वीर में सामने की ओर एक भवन दिखाई दे रहा है इसमें कई सारे खिड़कियां तथा दरवाजे हैं।

इसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर रखा है।

तस्वीर किसी हॉस्पिटल का है जहां हमें कई सारे लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

यहां अनेकों प्रकार की साइकिल लगी हुई दिखाई दे रही है जो छोटे से लेकर और बड़े बच्चों के लिए है।

क्रीम कलर का पदार्थ गाड़ी पर लगाता हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में एक पीले रंग का टेंपू दिखाई दे रहा है जिसके पीछे एक बड़ी सी नारंगी रंग की मशीन लदी हुई है।

दाई ओर एक पिरामिड शेप का कुछ बना हुआ नजर आ रहा है।

तथा ऊंचे ऊंचे शिखर वाले स्तंभ दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर किसी नदी का है जिसके पानी का रंग मटमैला हो गया है।

सामने की ओर कच्चे रास्ते बने हुए हैं।

सफेद कलर के अक्षर से मान सरोवर स्टेशनरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

चम्मच सेंड एक सफेद कलर का फ्लावर पॉट जिसमें एक पौधा लगा हुआ है।